ये एक ट्रेन के अंदर का एरिया है अ जिसने मतलब उसके बाहर से लिया गया है ।

ये एक पार्क का एरिया लग रहा है जिसमें काफी सारे अच्छे-अच्छे झूले लगे हुए हैं।